और पानी है तालाब है पेड़ पौधे दिखाई दे --

और नदी बहुत गहरा दिखाई दे रहा है और हल्का सा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है धुंधला धुंधला--

ये रेलवे ट्रैक है रेलवे ट्रैक मे बहुत -सी आ रेलवे पट्टरी भी है इसमें बहुत से इंसान भी दिखाई दे रहे हैं।